यह दृश्य शाम के समय का है जब अंधेरा होने ही वाला है।

इसमें एक मेज रखी हुई है जिसके ऊपर बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

बीच में एक बहुत बड़ा बिजली का खंबा लगा हुआ है।

सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यह एक वर्कशॉप दिखाई दे रही है।

इस होटल के ऊपर के भाग का कलर व्हाइट है और नीचे में एक दुकान है।

कुछ व्यक्ति यहां पर शॉपिंग कर रहे हैं यह दृश्य बहुत ही अच्छा लग रहा है।

सामने ब्लू कलर की तीन कुर्सियां रखी हुई है।

यह एक कैफे का दृश्य लग रहा है।

इसमें लाल और हरे कलर की कुर्सियां रखी हुई है।

और दाएं तरफ एक हरे कलर का कचरा पात्र रखा हुआ है।

यह एक शादी का स्टेज लग रहा है सामने एक सोफा रखा हुआ है।

दाहिने तरफ एक पालना रखा हुआ है दाएं बाएं दोनों तरफ खिड़कियां लगी हुई है।

इसके ऊपर एक प्लस का निशान रखा हुआ है।

यह एक मेला लग रहा है।

यहां पे तीन लोग खड़े हैं।

इस बुकस्टोर के पास में एक मेडिकल दिखाई दे रहा है।

यह एक साइबर कैफे लग रहा है।

सामने एक क्यू आर कोड भी दिखाई दे रहा है।

है दृश्य किसी रेस्टोरेंट या बार के बाहार का प्रतीत हो रहा है।

और ये स्थान बहोत ही सुंदर और शांतिपूर्ण प्रतीत हो रहा है।